ग्रीन और ऑरेंज कलर के कपड़े पेहने हुए हैं और इसके जमीन का कलर ग्रे हैं।

फैन दिखाई दे रहा है वाइट कलर का और ढेर सारी बेड दिखाई दे रही है वाइट कलर की इसमें कवर लगे हुए हैं ग्रीन और रेड कलर के।

और वाइट कलर की लाइटें दिखाई दे रही इसके जमीन का कलर ग्रे है और ब्लैक कलर है।

यहां हमें एक बड़ी सी बॉक्स दिखाई दे रही है जो मैरून कलर की है और ऊपर एक छोटा सा झूला दिखाई दे रहा है जो बच्चों का खिलौना है येलो कलर का रेड कलर का है और इस दुकान का कलर व्हाइट है यहां पे ढेर सारी छोटी छोटी खिलौने और सामने रखी हुई है और इसके जमीन का कलर व्हाइट ग्रे है।

यहां हमें कुछ घरें दिखाई दे रही है जो रेड कलर की है और वाइट कलर की है और इसमें कुछ कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है जो ब्लैक और वाइट कलर की है और एक मैदान दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का है मिट्टी कलर का है और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे ग्रीन कलर के और उसके आसमान का कलर व्हाइट है।

यहाँ हमे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो फूल के बीच में बैठा हुआ है। अ उसके कपड़ा का कलर व्हाइट और हल्का ग्रीन कलर है और पीछे दीवार दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की पिंक है और व्हाइट कलर की है और सामने एक --

और कुछ कुछ डब्बे दिखाई दे रहे हैं जो रेड और वाइट कलर की है और सामने एक चेयर दिखाई दे रहा है।